मैं देख पा रही हूं एक बहुत सुंदर मंदिर है।

और दो तीन बाइक लगी हुई है।

और पेंट भी किया हुआ है दीवाल ।

और नीचे त्रिपाल भी बिछाए गए हैं।

और कलर भी बहुत सुंदर लग रहा है लाइट बत्ती भी लगी--

सारे मकान में पेंट किया गया है।

बीच में एक इंटा का सड़क भी है।

और एक आदमी मसाला ले के सर पे चहल रहे हैं और बगल--